यहाँ पर हमें एक शॉप दिखाई दे रही है। शॉप के अंदर हमें कुछ लोहे के पाइप --

यहाँ पर कुछ पानी की बॉटलस कैरेट और कुछ केले बगेरा दिखाई दे रहे है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति भी बैठे हुए दिखाई दे रही है।

पर हमें एक बॉल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें कुछ बगुला दिखाई दे रहे है और कुछ पेड़ भी यहाँ मैदान में दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमे एक एयरपोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है। बाहर कई सारे पुलिस ट्रैफिक के--